इमारत की हालत बहुत ही जर्जर है।

जिससे ये प्रतीत होता है की ये ईसाई समुदाय की शादी है कुछ लोग वहाँ हाथ में किसी धार्मिक पुस्तक को लिए पढ़ रहे है।

इस तस्वीर में एक इमारत का बाहरी हिस्सा दिखाया गया है इमारत का जो बाहरी हिस्सा है वो सफेद रंग का है।

इस तस्वीर में एक चिड़िया घर के अंदर का दृश्य दिखाया गया है यहाँ परिसर में एक मुख्य द्वार बना है।

पर एक लाउड स्पीकर लगा है जिससे कि ये प्रतीत हो रहा है --

इस तस्वीर में एक पूजा का दृश्य दिखाई दे रहा है जो की शायद छठ पूजा का दृश्य है ।

हेल्थ केयर और न्यू अपोलो डेंटल विनायक चाइल्ड एंड हेल्थ केयर और इसके अलावा एक फिजियोथेरेपी का विज्ञापन भी है ।

जैसे कोई आता-जाता ना हो और उसके दूसरी ओर एक इमारत नजर आ रही है बाकि आस-पास सारे पेड़ ही पेड़ है |

इस तस्वीर में एक अति आधुनिक इमारत का दृश्य दिखाई दे रहा है इमारत बहुत सुंदर है हल्के पीले रंग और स --

तालाब की दूसरी और बहुत बड़ी-बड़ी इमारते नजर आ रही है और कुछ पेड़ पौधे भी |

इमारत के बाहरी हिस्से पे रंग का काम होने वाला है क्यूंकि उस पे काई जम चुकी है ।